तस्वीर में सड़क पर दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक आदमी जो है वो साइड में खड़ा है।

पीछे कुछ बैग रखे हुए हैं।

और रास्ते के एक ओर जो है वो रेलिंग लगी है और लाइट भी लगी हुई है।

दूसरी ओर एक और आदमी बैठा है।

यह एक रूम के अंदर की फोटो है।

यह तस्वीर एक डेलीनेक्स शॉप की है।

पीछे एक कार्टेन लगा हुआ है शीशा लगा है उसमें भी एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक सोफा पड़ा हुआ दिख रहा है जिस पर कुशन रखे हैं चार--

सोफे का रंग जो है वो ग्रे ब्लैक कलर का है।

और जिसमें जो है वो तीन स्लाइडिंग झूले जो है वो लगे हुए हैं।

बर्फ पड़ी हुई है जिसपे लोग घूम रहे है।